सामने चित्र दिख रहा है ये पंजाब नेशनल बैंक से मिल रहा है। शाखा बदायूं में है जोकि चौक पर है। लावेला चौक पर है।

दिख रहा है ये कार पार्किंग का चित्र है। किसी ने कॉमर्शियल हिसाब से कार पार्किंग की हुई है। टिन शेड डलवाकर उस कार पार्किंग की है।

जो है ये एक एक मशीन है जिससे सुराख किया जा रहा है।

ये सोरोशुकूर रेलवे स्टेशन है इसे सौरो कहते हैं। इस रेलवे स्टेशन से इ रेलवे स्टेशन पे हर ट्रेन रुकती है।

हीरो की एजेंसी लग रही है किसी जगह पे। हीरो मार्ट का और ये अच्छा हीरो मार्ट है। हीरो का सामान अच्छा होता है। हीरो की जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं बोत अच्छी होती है। इनका पिकअप भी अच्छा होता है।

और कुर्सिया पड़ी हुई हैं क्लास रूम है। क्लास रूम पर ये हेड वाली हैंडिल वाली कुर्सियां हैं। कुर्सियां अच्छी लग रही हैं। क्लास रूम अच्छा है।